तथा यहाँ पर हरे रंग का कारपेट भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर यहाँ पर झोंपड़ी भी दिखाई दे रही है एक झंडा दिखाई दे रहा है सड़क पे घांस लगी हुई दिखाई दे रही है।

उसने चपल पहनी हुई है । पास में पेड़ दिखाई दे रहे हैं । खम्बे दिखाई दे रहे हैं। दीवारे दिखाई दे रही हैं और कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे --

दिखाई दे रहा है । पीछे की तरफ सीढियाँ दिखाई दे रही है जोकि पीले और लाल कलर की हैं।

यहाँ पर एक बिलडिंग दिखाई दे रही है बिलडिंग के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड नीले कलर का लगा हुआ है बोर्ड पर सफ़ेद अक्षरों से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

पास में एक हरे रंग का कारपेट भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है । जमीन दिखाई दे रही है । मोटरसाइकिल का रंग काला है । यह दिखाई दे रहा --

सामने प्रसाद रखा हुआ है फूल दिखाई दे रहे दही इधर रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक पानी का लोटा --

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है । सड़क के आस-पास चद्दर दिखाई दे रहे हैं । चद्दर के पास एक गाडी खड़ीं हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर एक शोरूम दे रहा है शोरूम पर महिंद्रा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पास ही में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है जहा पर भी महिंद्रा --

एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है । एक साइकिल खड़ीं हुई दिखाई दे --

एक छोटी-सी बाल्टी में मग्गा भी दिखाई दे --